यह एक कंप्यूटर सेंटर हैजहां पे डी सी ए पी जी डी सी ए टाइपिंग टैली --

खिड़की भी है से एक घर भी है यहां पे भी दिख रही है बोर्ड भी लगा हुआ है।

है बहुत ही प्यारे लग रहे है व्हाइट कलर का पैंट किया हुआ है ।